दुकानदार मास्क लगाया हुआ है और आ आदमी को जिसके हाथ मे लगी हुई है जिसने पट्टी पेहनी हुई है उसको दवा दे रहा है और --

यहाँ पर चार लेडीजें सफ़ेद कलर की साड़ियां पहने हुई हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक आ --